यहां मुझे कुछ गमले दिखाई दे रहे हैं।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

यहां मुझे एक काउंटर दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक जिम दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है।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

इस तस्वीर में मुझे एक रोड दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में मुझे दो सोफे दिखाई दे रहे हैं।

यहां मुझे एक खिड़की दिखाई दे रही है।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

यहां मुझे कुछ कप दिखाई दे रहे हैं।